यहाँ पर एक बस का कुछ हिस्सा दिखाइ दे रहा है यहाँ पर थोड़े से पेड़ भी नज़र आ रहे है | यहाँ पर बिजली के ट्रांसफार्म दे रहे है जमीन पर बड़ी बड़ी टाइल्स लगी है।

ये टायर ट्रक के टायर हो सकते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

इस इमेज में तीन कच्छु दिखाई दे रहे है। यहाँ पर पानी नजर आ रहा है।

इस इमेज में कुछ पानी दिखाइ दे रहा है। ये पानी कुछ गन्दा सा नज़र रहा है इस ये कोई नदी हो सक --

तीनो लड़के दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर कुछ खाली जमीन नज़र आ रही है |

यहाँ पर कुछ और भी चीजें दिखाई दे रही हैं।